यहां एक मॉल के अंदर का व्यू दिखाया जा रहा है।

यहाँ आसमान दिखाई दे रहा है इसमे वारंटी दिखाई दे रही है एक टॉवर दिखाई दे रहा है।

यहां एक गेट दिखाई दे रहा है गेट के ऊपर यहां दी मुंगेर जमुई सेंटर की आपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा- सिकंदरा दिखाई दे रहा है इसका दरवाजा खुला दिखाई दे रहा है।